ये एक धान का खेत हैं जिसके उस पार पहाड़ हैं और यहां पे कुछ पेड़ भी हैं।

यहां पे तरह तरह के फूल हैं।

गेंदे के फूल और भी कई तरह के फूल--

कई सारे बच्चे आए हुए है।

जिसमें नीले कलर का पानी है इसके बगल में कुछ पत्थर रखे हुए हैं।

साइड में कुछ गमले हैं जिसमें हरे कलर के पौधे लगे हुए हैं।

एक ने सफेद कलर का शर्ट पहना है।

ये वरमाला यहां पे तीन चार आदमी भी खड़े हैं जो की वरमाला बेच रहे हैं।

ये एक शहर का दृश्य है।

जहां पे एक तरफ तो कई सारे टू व्हीलर खड़े हैं।

और दूसरी तरफ मिनारतें खड़ी हैं बीच में से वाहन आ जा रहे हैं और कुछ लोग अपने वाहन के साथ खड़े हैं

बेंच का रंग सफेद है यहां पे एक स्टील का खंभा भी लगा हुआ है जिसको पोल बोलते हैं।

यहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज भी है कोल्ड ड्रिंक्स रखने के लिए।

साथ लड़के खड़े हुए है जोकि फोटो खींचा--

ये एक बुक की दुकान है।

फोन पकड़कर कुछ बता रहा है और सभी लोग उसे ध्यान से सुन रहे हैं।

एक बंदा मोटरसाइकिल में आ रहा है।

और यहां पे कई सारी इमारतें भी हैं।

इसमें विभिन्न प्रकार के फूल सजे हुए हैं जिनमें लाल सफेद गुलाबी इत्यादि फुल दिख रहे हैं।

एक छात्रा सभी को खड़ी होकर देख रही है और दूसरी छात्रा पहली छात्रा को देख रही है।